और ब्लैक भी नजर आ रही हैं।

और इस सड़क पर एक ऑटो भी नजर आ रहा है।

टेंट लगा हुआ है।

और पेड़ नजर आ रहे हैं।

और कुछ पंछी भी--

जहां एक बल्ब जल रहा है।

कुर्सी भी नजर आ रही है।

जिस जहां बहुत सारी--

कुछ टेबले रखी हुई हैं।

आ रहा है।

जिसमें बहुत सारे झूले नजर आ रहे हैं।